येल्लो ब्लु रंग का दिखाई पड़ रहा है। पीछे बहुत सारे परदे लगे है और लाइट भी लगी हुई है। यहा कुछ रेड कलर बलून दिखाई पड़ रहे है। उपर छत पर बहुत सारी --

यहाँ पे सामने जिम का शाडो जैसा बना हुआ है। यहा पे नीचे रेड कलर की खुर्ची भी रखी हुई है। यहा साइड मे बहुत सारे खिड़किया और दरवाजे दिये हुए दिखाए और ए दरवाजे पे क्रॉस का भी बना हुआ व्हाइट कलर का दिख रहा है।

एक मकान दिया हुवा है जोकि व्हाइट रंग का दिखाई पड़ रहा है यह पे सामने सीडी ब्रावुन कलर की दिखाई पड़ रही है और यहापे पीछे शायद येल्लो कलर का दरवाजा भी दिया हुवा है।

हमे एक मकान जैसा दिखाई पड़ रहा है या बना हुआ दिख रहा उपर साईड खिड्किया लगी हुई है जिनमें काच लगा हुआ और रेलिंग भी बना हुआ दिखाई पड़ रहा है यह पे सामने एक सीडी भी रखी हुई है।

सामने एक मकान जैसा दिख रहा है जोकि पूरा रेड कलर मे बना हुवा है यहा पे सामने चार पिल्लर व्हाइट कलर के दिखाई दे पड़ रहे।

यहाँ पे साइड मे बहुत सारे पेड़ दिये गए है जोकि ग्रीन और ब्लॅक कलर मे दिखाई पड़ रहे है उपर आसमान भी ग्रे रंग का दिखाई पड़ रहा है।

एक खुर्चि रेड कलर की रखी हुई है। पीछे दीवाल पर दो खिड़की दिखाई पड़ रही है। जिनमें काच का शीशा लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है और वे व्हाइट कलर मे चमक रहा है। उपर छत पे भी फ़ैन लगी हुई व्हाइट रंग के साइड मे एक ब्लू कलर का बोर्ड लगा --

सामने बोर्ड दिखाई पड़ रहा है जो की वाइट रंग का दिख रहा है और ऊपर से ब्लू रंग का दिखाई पद रहा है और ये सामने कुछ खिड़की जैसा दिखाई पड़ रहा है।